लरका फोटो क्लिक कर रहा है और एक लरका टोपी पहन के आगे रुका हुआ है।

बिल्डिंग का साइड साइड में लाइट लगा हुआ है।

इस ड्राइंग में देखने के लिए मिला है एक बिल्डिंग का नीचे बहुत सारा पौधा है।

झाड़ू पोछा सामान चीज टाइम छोटा छोटा बोतल चाकू कैंची सब देखने के लिए मिला है।

नदी का साइड साइड में थोरा थोरा पानी है और बरा बहुत बहुत पत्थल है बरा बरा सा।

इस जगह में देखने को मिला है एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल ।